यहा पे बेंक है बंक का नाम है किनारा बंक यहा पे तीन व्यक्ति दिखाई दे रहै है जो व्यक्ति दो व्यक्ति खड़े है एक मोबाईल लेके एक ठो कुर्सी पे बेठे होबे है।

यहाँ पे ढेर सारे हैं यहाँ पे ऐसे देख दिखाया जा रहा है की यहाँ पे कोई कोचिंग है और बोर्ड पे लिखा हुआ है की फिजिक्स क्लास जैसे चल रही है ।

यहाँ पे नीचे में अल अलवेस्टर लगे हुए हैं ऊपर मे छत ढला करल है और अलवेस्टर के ऊपर में कुछ टेबुल हैं| टेबुल पे एक व्यक्ति यहाँ पे लेके कोई बेठल है।